यहां प अंदर में एक आदमी भी दिख रहा है यहां पे ऊपर में भी बैनर लगा हुआ है जिसमे श्री श्रद्धा स्टोर लिखा हुआ है।

यहां पे एक येलो कलर का बोतल भी एक बेंच के ऊपर रखा हुआ है यहां पे बेंच का कलर सफेद है और बेंच में लगे रॉड का कलर ब्लैक है यहां --

यह एक मंदिर का दृश्य है जहां पे बहुत सारे लोग खड़े है और मंदिर का मीनार भी दिख रहा है।

यहां पे ऊपर में माला भी लगाया हुआ है बगल में भी एक घर है जो की ईट से--

सामने में दो डब्बे रखे हुए हैं जिसपे शहनाज हुसैन लिखा हुआ है और उसके फोटो भी एक लड़की का है।

सजाया गया है बैलून की मदद से यहां पर अगल बगल में भी टेंट लगा हुआ हैयहां पर एक इमारत के ऊपर में--